ये एक किसी कैफे की शॉप है यहां पे--

ये एक ऑफिस की पिक है जहां तहसील इ शिक्षा केंद्र दिशा केंद्र है।

एक जैकेट और ब्लैक पैंट पहन के खड़ा है और एक अंदर शर्ट --

छोटे छोटे गेट लगे हुये हैं पार्क में अंदर आने के लिए एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है बाह --

बाइक खड़ी हुई हैं यहां पे स्कूटी खड़ी हुई है और एक रेड कलर का कुछ रखा हुआ है।

और पीछे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है ब्लैक कलर की टंकी राखी हुई है।

ये एक स्टेज सा सजा हुआ है जो बहुत अच्छा सजा हुआ है ग्रीन कलर का --

और पीछे रेड कलर का कवर कर रखा है परदे से--

ये एक बाल बेस प्लाजा है यहां पे बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है एक सामने ऑटो जा रहा--

गेट बना हुआ है फूल का और मार्केट है येबहोत सारी भीड़ हो रखी है।

ये एक एरिया है यहां पे बीच में रस्ता जा रही है और बहोत सारे पेड़ लगे हुए साइड में एक --